और वो नीले रंग की है।

चाहा बोहत सारे सामान ।

जिसमें राम लखन सीता हनुमान जी कृष्ण भगवान --

लाइटो से सजा या गया है। अच्छे से सजा या गया है।